और कपड़े धोने का साबुन भी है नहाने का --

एक जंगल है जंगल जंगल से अने --

पाइप हरा कलर का गया है उधर से और पेड़ है।

और नीचे में हल्का सा पानी है और सूखें--

एक मंदिर है। मंदिर में अन्य पूजा धाम--

है बड़े बड़े और आस --

वर वगेरे फ फ्लावर वगेरे लगे है।

अंदर जा रहे हैं और कलरफूल है उधर.

अने वायर है वायर --